इ इ इ बच्चे निचे कुछ बच्चे बैठे हुए है जो कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे है लोग ऐड दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे तिरंगे लगे हुए है उसमे भगवान की झंडी भी लगे हुऐ है।

कपड़ो से नीले कलर के कपड़ो से सजावट दिखाई दे रही है बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं जो सफेद लाल या हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं सेंटा क्लोज --

चेयर लगी हुई है चेयर पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुछ बिल्डिंग दिख रही है बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन भी लगा हुआ है जिस पर बच्चे उतर चढ़ रहे है।

ब्लू कुर्ता ब्लू जीन्स पहन रहा है एक हाथ में चूड़ा भी पहन रहा है उसके पास गमला रखा हुआ है उसमे हरा हरा पौधा दिखाई दे रहा है।